यहां एक हरे रंग का टेंट भी है।

इसके दीवार पर एक बैनर भी लगा हुआ है। जहां लिखा है किसान सेवा केंद्र। यहां पर लोग अक्सर पेट्रोल वगैरा भरवाने आते हैं।

यह घर की दीवारें बिल्कुल साफ सुथरी है और इसके सामने एक पेड़ भी है।

लोग पेट्रोल भरवाने आते हैं हम देख सकते हैं कि यहां एक मोटरसाइकल वाला--

यहां पर कुर्सियां लगी हुई हैं।

यह एक खुला बगीचा है जिसमें बहोत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं यहां पर एक सड़क भी बनी हुई है जहां पर लोग--

यहां पर मीटिंग चल रही है।

एक सर खड़े हो कर बोल रहे हैं और बाकी लोग कुर्सियों पर बैठकर उनकी बात को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं।

बाहर बैठने के लिए बेंच भी है।

यहां पर बहोत साफ सफाई हम देख सकते हैं।

यह एक खेत है जिसमें बची हुई फसल के गट्ठे रखे हुए हैं।

इसमें इनकम टैक्स की और लॉ की किताबें ज्यादातर पड़ी हुई हैं।

तीन गाड़ियां हमें दिख रही हैं ओर उनके पीछे भी कुछ गाड़ियां खड़ी हुईं हैं बाहर चार गमले भी रखे हुएं हैं।

और नारियल और पूजा का काफी सारा सामान--

और यहां पर लाइन में ही सारा काम होता है हमें एक शेड भी इसमें दिख रहा है।

यह एक लाइब्रेरी है जिसमें काम चल रहा है इस लाइब्रेरी में बहोत सारे लोग बैठे हुए हैं और--

खड्डे भी है यहां पर उन बड़े-बड़े खड्डो में हमें तीन चार लोग भी देखने को मिल रहे है और बहोत सारे इंटें भी पड़ी हुई है।

टेंट भी लगे हुए हैं और काफी काम चल रहा है।

और बहुत सारे खिलौने भी हैं।